सायद तलाब है तलाब में पेड़ की कुछ टहनियाँ कटी हुई है और जो रुटेक्शन आ रही है पेड़ की तालाब में बहुत खुबसूरत--

यहाँ पे यहाँ पुंजन गेट है। यहाँ ढेर सारी बिल्डिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे दो पेड़ भी दिख रहे है लेफ्ट राइट दोनों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है ।

कहीं की भी सेंटर की परीक्षा इसी में दी जाती है इस बिल्डिंग का कलर हरा और वाइट है।